यहाँ पे एक पेड़ है बॉल से सजाया गया है यहाँ पे रोशनी कर रहा है।

जैसा की हम लोग इस चित्र में देख पा रहे है की एक पुराने खंडर है।

यह रोड के किनारे स्थित है।